खाने पीने के हैं यहाँ पर हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ से एक कार यहाँ को आ रही है एक कार वहाँ को जा रही है। ऑटो भी आ रही है लकड़ी का रिक्शा भी आ --

यह एक ग्राउंड है। यहाँ पे बोहोत अच्छा लग रहा है। ये भैया फोटो खिंचवा रहे हैं। ये राइडर है जो कि इनको इनके पास राइडर वाला --

हेलमेंट है यहाँ पर हरे भरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। वहां पीछे कुछ पानी फुव्वारा बनाया गया है।

चंद्रमा भी दिख रहा है लाइट भी दिख रही है एक अच्छी सी दो दीदी हैं और तीन दो लड़के हैं जो डांस कर रहे हैं अच्छा सुंदर --

इसके बगल में श्रीमती एंटरप्राइज हैं और यहीं पर एक किराना स्टोर भी है। यहाँ पर अच्छे दामों में चीनी मिलती है।

यह एक पार्क है जो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हरे -भरे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे झूले हैं बच्चों को खेलने के लिए। ये पार्क बोहोत अच्छा हैं। यहां पर अच्छे-अच्छे --

झूले हैं यहाँ पर बोहोत मंजा आता है झूलने में। ऊपर सफेद कलर का आसामन है जो अच्छा लग रहा है।

यह ये एक स्टैंड है। यहाँ पर ऑटो काफी खड़ी हुई हैं। ये यहाँ से ऑटो कहीं भी जाती हैं। आप जहां तक ले जाओ पर किराया भी --

थोड़ा कम लेते है पर ज्यादा नहीं लेते। यहाँ पर बोहोत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जल्दी ऑटो मिल जाती है।

यह एक कटिंग दुकान है। यहाॅं पर अच्छी कटिंग की जाती है। यहाँ पर ए_सी लगी हुई एल_ई_डी लाइट दो पंखे --